इस फोटो में हमें यहां पे एक ऑफिस दिखाया गया है।

और यहां कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं।

पीछे में एक अलमीरा दिख रही है।